और मंदिर के बाजू में ही हमें एक ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा है इस चित्र में एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे रंग बिरंगी साड़ियां है जैसे की सबसे ऊपर जो है वो लाल कलर की साड़ी है।

इस चित्र में हमें एक थैला भी दिख सकता है बाजू में एक गूगल पे का स्कैनर है।

चित्र में दो टेबल हैं और एक कई कुछ भक्तजन भी हैं यहां पे जो कि दर्शन करते हुए दिख रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं।

और यहां पर इंग्लिश एक्सप्रेस जो है ऊपर लिखा गया है वाइट कलर का सफेद कलर का एक बोर्ड है।

और दुकान के सबसे शुरुआत में ही एक कंप्यूटर रखा गया है कंप्यूटर के नीचे लाल कलर का कुछ पोस्टर लगा है।

और दुकान के अंदर काफी सारे मोबाइल फोन्स भी रखे हुए हैं।

अं सफेद कलर में यह शोरूम है नीचे टाइल्स दिखाई गई है।

ए_सी भी देखने को मिल सकता है जोकि कुछ नीले कलर के है बैकग्राउंड में है।

काफी बड़ी शोरूम लग रही है जहां पे कुछ लाइट्स भी जल रहे हैं।

इस कमरे के अंदर एक बेड भी रखा हुआ है बेड पे ऊपर एक सफेद कलर का चादर है जिसके ऊपर दो और भी चादर रखे हुए गए हैं गुलाबी कलर में।

फोटो के अंदर एक हमे पुराने जमाने का सफेद कलर का महल जैसा दिख रहा है

और यह महल जो है वो अ उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है।

फोटो की शुरुआत में एक गाड़ी को देखने को मिल सकता है।

और स्पेसल राजिस्थानी पंजाबी चायनिस ये सारी चीजे लिखी हुई --

अलग अलग कलर में कई सारे बुक्स देखने को मिल सकते हैं व्यक्ति ने सफेद कलर का शर्ट भी पहना हुआ है।

यह जो चित्र है वह एक टायर के दुकान का चित्र है जिसमें वे कई सारी टायर पहिए देखने को मिल जा सकते हैं।

वा सदन के बाहर अ स्कूटी और बाइक रखे हुए हैं।

इस चित्र के अंदर एक पिलर है जहां पर दो खिड़कियां है और लाल कलर में वो पिलर रंगा गया है।

चित्र को देखके यह लगता है कि कोई दुकान की नई शुरुआत है जहां पे कई सारे लाल और पीले कलर में गुब्बारे लगाए गए हैं।

और इसी के अंदर हमें कई सारे शूज और च शूज भी देखने को मिल सकते हैं।

जैसे कि कुछ यहां पे मसाले दिखाई दे रहे है तो कई सारे तेल के पांच लीटर वाले हमें डब्बे भी दिखाई दे रहे है चेतक का भी तेल रखा हुआ है।

यहां पे और भी कई सारे एक लीटर के भी तेल के कई सारे डब्बे हैं और भी बाजू में सामान रखे गए हैं घर के उपयोग के।

इस चित्र के अंदर हमें यहां पे अ पिज़्ज़ा हट लिखा हुआ एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

चित्र के अंदर हमें दो छोटे छोटे कमरे टाइप कैंपिंग के लिए जगह दिखाई दे रही है।

काफी ज्यादा हरियाली है इस चित्र के अंदर पेड़ पौधे काफी देखने को मिल सकते है।

और फिर बाद में इस क्षेत्र की मंदिर की ऊपर जो है एक झंडा भी लाल कलर में है।

फिर बाद में यहां पे सामने हमे कुछ लाइट्स भी देखने को मिल जाता है।

और आसमान काफी नीला है दोपहर का मौसम हमें इस चित्र के अंदर लग रहा है।

चित्र में एक हमें लाल कलर का अ झंडा भी देखने को मिल रहा है।

पेट्रोल पंप के अह आगे हमें सबसे पहले फोटो में एक ट्रक दिख रहा --